और सामने डूबता हुआ सूर्य दिखाई दे रहा है।

एक पेट्रोल पंप का परिसर जहा एक ऑटो मे पेट्रोल डाल रहा है और एक बगल मे पेट्रोल --

उद्यान चारो तरफ से और तार से घेरी हुई है।

एक पूराना दीवार दीवारों मे कुछ चित्र उगैरे गए है। जिसमे कुछ नर्तकियों के चित्र रखे गए है। और कुछ--

बस ट्रेन के बगल मे कुछ छोटे बड़े पेड़ पौधे है एक छोटा सा बिजली का खंबा जिसमे लाइट लगा --